देख सकते है यह एक नदी है और बहोत ही गहरा नदी है और बहोत ही लम्बा-चौड़ा--

और यह देख सकते है चारों तरफ बहुत ही घना जंगल है नदी का साइड में और काफ़ी सारा पेड़ वगेरा लगा हुआ है।

बड़ा और चारों तरफ बादल छाया हुआ है काफी सुन्दर--

देख सकते है ये तोता है और काफ़ी--

जबरजस्त दिख रहा होगा आप लोगों को चारों तरफ से--

दूर- दूर से आदमी आता है यह रेस्टोरेंट --

ये लोग भईया लोग धान लोड कर रहै है और लोरी पे--

और काफ़ी धान लोड कर रहे है देख सकते है।

और चाची-चाचा को कोंची बोल रहा है और चाचा का मोबाइल छूट गया है इस लिए चाची--

तकलीफ़ में फसा हुआ है शेर इसको घेर लिया है चारों तरफ से --

पीछे लोग मास्क कोंई-कोंई लगाया हुआ है कोरोना टाइम का है और ये दुरी बनाया हुआ है।

चारों तरफ से चादरा वगैरह लगा हुआ है।